सामने गोल सा चबूतरा बना हुआ है जोकि ब्राउन रंग दिखाई पड़ रहा है। उसके ऊपर कुछ ब्लू कलर का रखा हुआ दिख रहा है। उस पर बीच में एक फव्वारा पानी का बेह रहा है जोकि वाइट रंग का दिखाई पड़ रहा है।

इसका यूज सर्दियों में किया जाता है। सामने एक आदमी का हाथ दिखाई पड़ रहा हैउसने ब्लू पर्पल कलर की शर्ट पहन रखी है।

सामने एक एरोप्लेन दिखाई पड़ रहा है जो की व्हाइट रंग का है और वह रोड पे चल रहा है रोड ग्रे कलर की दिखाई पड़ रही है साइड में पत्थर बीछे हुए दिख रहे हैं जो की ब्राउन कलर में दिख रहे हैं कुछ गिट्टियाँ भी दिखाई पड़ रही हैं ऊपर आसमान का कलर व्हाइट कलर में दिखाई पड़ रहा है एरोप्लेन का व्हाइट का कलर दिख रहा है।

हमें एक गाय दिखाई पड़ रही है जो की ब्लैक और आ व्हाइट कलर की है यह खुटे से बनी उसके गले में यलो कलर की रस्सी बंधी हुई है।

सारे पेड़ भी दिखाई पड़ रहे है जोकि ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रहे है और कुछ सुखी लकड़ियां भी दिखाई पड़ रही हैं।

हमें ग्राउंड जैसा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे बोहोत सारे छोटे-छोटे बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं स्कूल यूनिफार्म पहन रखी है सामने एक लेडी खड़ी हुई है और ये सभी बच्चे खेल रहे हैं नीचे ग्रीन कलर की घास दिखाई पड़ रही है साइड में कुछ बच्चे बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

पत्थर पर कुछ घास भी उगी हुई दिख रहें है जो की ग्रीन कलर की दिखाई पड़ रहे है।

कछुआ दिखाई पड़ रहा है| इसके ऊपर का हिस्सा ग्रे कलर में दिख रहा है और इसके पैर पिंक ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रहा है| ये घास पे चल रहा हैं | सामने बहोत सारी घास दिखाई पड़ रही हैं जो कि ग्रे कलर में दिखाई पड़ रही है और ग्रीन कलर में दिख --

सामने एक चाट का ठेला खड़ा हुआ दिख रहा है इसमें बतासे रखें हुए हैं। सामने एक बर्तन दिखाई पड़ रहा है उसपे कुछ खाने का सामान रखा हुआ है। सामने एक चॉप-स्टिक रखी हुई दिखाई पड़ रही है।

एक मकान दिखाई पड़ रहा है। ये दो खंड का बना हुआ है और यहां नीचे ग्रे कलर ऊपर पिंक कलर में दिखाई पड़ रहा है। यहां एक दरवाजा दिया हुआ है। वहां पर कुछ लोग खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सामने एक आदमी बाहर खड़ा हुआ है।

सामने तीन पिंडियो जैसा दिखाई पड़ रहा है उसपे नारियल दिखाई पड़ रहा है। सामने बहुत सारे फ्रूट्स भी चढ़े हुए दिखाई पड़ रहे है सामने एक पर्दा दिखाई पड़ रहा है सामने एक पूजा की थाली भी रखी हुई दिखाई पड़ रही है एक पिंक कलर का पर्दा दिख रहा है।